लड़कियों ने साड़ी पहन रखी है लड़कों ने व्हाइट कपड़े पहन रखे है ऊपर धुआं भी उड़ रहा है रात का सीन है।

जिस पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं जानवरों के बच्चों की कोई छोटी स्कूल है इसके पास में एक और दुकान है।

रेस्टोरेंट के जैसे इसमें अमूल का बोर्ड लगा हुआ है अमूल की चीजें मिलती है पिज़्ज़ा मिलता है।

अलग अलग वैरायटी की किताबें रखी हुई हैं कुछ लोग इसमें से किताबें निकाल रहे हैं एक आदमी इसमें से किताबें निकाल रहा है।

भगवान की ज्योत जल रही है बहोत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो आग लिए हुए इसमें ज्योत कर रहे हैं।

इस पिक्चर में यह एक बहोत सुंदर पानी का झरना चल रहा है इसमें से पानी निकल रहा --

पास में लोग दिए जला रहे हैं लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए सफेद साड़ी पहनी हुई है और सफेद मास्क लगाए हुए हैं।

बहुत अच्छी एक एंब्रॉयडरी जिसमें घर और पेड़ दिखाई दे छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई गई--

ये किसी स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है इसमें फरियों से और गुब्बारों से डेकोरेट किया हुआ है।

दो स्कूटी खड़ी है और आसपास एक दो पेड़ हैं पीपल का पेड़ भी है और सीडी लगी हुई है।

इसके आस पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे एक बहोत बड़ा पेड़ है।

ये पिक्चर किसी शादी का डेकोरेशन की है इसके पीछे एक घर है जिस पे लाइटें लगी हुई शादी का डेकोरेशन किया हुआ है।

आस पास में बहोंत सारे पेड़ पौधे हैं पीछे एक बिल्डिंग भी हैं यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं।

जिसमें छोटे-छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं टेबलें हैं उस पे चम्मच स्टील के बर्तन वगैरा --

इस पिक्चर में ये किताबों की दुकान है जिसमें बहुत सारी वैरायटी की अलग अलग किताबें रखी हुई हैं।

उस दुकान में दो पंखे लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में यह बेडरूम है जिसपे इसके बेड पर वाइट कलर की चद्दर लगी हुई है तकिए रखे हुए हैं इसमें दीवार --

इसमें तीन बसे खड़ी है एक ग्रीन कलर की और दो रेड कलर की लोग कुछ आस पास घूम रहे है।